और यहां पे बहोत बड़े बड़े पेड़ हैं।

उधर से ट्यूबवेल में से पानी पाइप मे से इस गड्ढे में पानी गिर रहा है।

और यहां पे एक आदमी चलकर आ रहा है।

और यहां पर छोटे छोटे पेड़ लगाए गए हैं।

और एक गे एक बेड भी ल पड़ा हुआ है।

ये यहां पे ट्रैक्टर में और ट्रॉली में एक आदमी को बैठाया हुआ है।

और इन गाड़ियों के ऊपर पेड़ भी है।

और इधर बराबर में पेड़ भी लगा हुआ है।

और इसमें चार डिब्बे सामने हैं।

और सामने दो गेट हैं।

और इस संदूक का कलर चॉकलेटी टाइप है।